और उनके सर के ऊपर सर लाइट के तार दिखाई दे रहे है ।

ये एक डी.जी.एल. सुपर मार्केट है।

यह एक कॉलेज है कॉलेज के आस-पास पेड़ हैं और उसमें से बच्चे जा रहे हैं।

कैसे अनार सेब फल केला निम्बू --

में टेबल्स चेयर लगी हुई --

दूर एक बड़ी बिल्डिंग है। एक तरफ लाइट्स की खंभे हैं। जहाँ पर बड़ी-बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं।

हर जगह पानी है पानी देख --

रखा हुआ है अ उसमे उस मकान से सम्बंधित सभी सामान बहार रखा है और पीछे --

ऊपर बादल की परछाई लेहरो की परछाई दिख रही हैं दूर-दूर तक पानी ही पानी भरा।

और हॉस्पिटल की गेट पर गमले हें निर्मल वह छोटे-छोटे पौधे लगे --